समान आता है। इसमें डीजल भी आता है। इसमें पेट्रोल भी आता है औ --

लोग बाग अपना सामान खरीद रहे हैं और यह एक अंदर एक गुफा जा रही है और यहाँ पर --

खड़ा है। ये शायद कुत्ता नहीं ये एक भेड़िया है। नहीं एक बकरी है।

और यहाँ पर कुछ पेड़ हैं जो हरे-हरे हैं और यह पर फूल का पेड़ है जो --

इस पर पीले फूल आ रहे

यह एक होटल है।

एक अंकल जी खड़े हैं जो शायद वेटर हैं यहाँ पर और एक पीछे कुर्सी खड़ी है और सामने सोफे डले हैं जो शायद निकाह के निकाह पढ़ाने के लिए --

और सामने एक मंदिर हैं। यह मंदिर के सामने फोटो खींचा रहा हैं और एक गेट हैं। जिसमे दो ताले लगे हुए हैं। ये इसके अंदर नहीं जा सकता हैं मंदिर के अंदर।

और मंदिर मे लोग पूजा करने के लिए आते हैं और जो यहाँ पर भीड़ लग रही है वो शायद --

यह एक चम्पू सा लड़का है। जिसने --

और नीचे एक झोपड़ी सी बनी हुई है जो टीन की है और --